हमे बहोत सारा कचड़ा नज़र आ रहा है इसमें बहोत सारे मजदुर भी नज़र आ रहे है जो की कूड़े को--

प्याज़ टमाटर नज़र आ रहें हैं और कुछ फल भी दिख रहें हैं।

यह एक सुन्दर सा रास्ता है जहाँ पर--

यह एक रास्ता है जहाँ पर हमे कई सारे टेम्पू नज़र आ रहे है।

यहाँ पर व्ययाम करने के लिए काफी यंत्र लगे हुए--